कार्स दिखाई दे रहीं हैं बाइक दिखाई दे रही है इस्कूटी दिखाई दे बाइक का कलर स्काय ब्लू कलर दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान मे ग्रीन और --

यहाँ पे बहुत सारे पहाड दिखाई दे रहे है झंडे दिखाई दे रहे है पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ ग्रे दिखाई दे रहे है ब्राउन दिखाई दे रहे है पथर दिखाई दे रहे है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर के दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है।

यहा है। यहा पे ब्लॅक कलर दिखायी दे रहा है स्काय ब्लू कलर कलर दिखायी दे रहा है और भी कुछ कलर्स दिखायी दे रहे है ये यहा पे कुछ पत्थर दिखायी दे रहा है।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

पेड दिखाई दे रहे है। कुछ लाईट दिखाई दे रहे है। असमान में स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ ग्रीन दिखाई दे रहे है। ऑरेंज दिखाई दे रहे है। कुछ लाईट ग्रीन दिखाई दे रहे--

कुछ ग्रीन कुछ ग्रे दिखाई दे रहा है आसमान मे स्काय ब्लू कलर दिखाई दे रहा है बहुत साडी केबल्स दिखाई दे रही है और नीचे पत्थर दिखाई दे रहे है पर्पल कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर दिखाई दे रहा --